इस तस्वीर में नर्सरी का दृश्य दिखाया गया है।

हरे रंग के पौधे पड़े हुए है।

इस तस्वीर में एक सभा दिखाई गयी हैं।